यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है उसके हाथ में तिरंगा है लड़का चश्मा लागये हुए हैं व्हाइट कलर की टी - शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए है।

डैम के ऊपर अ म एक दं डंडा गड़ा हुआ है।

आस - पास कुछ बडी - बड़ी लोहे की मशीने रखी हुए है एक छत बनी हुई है कुछ खंबे लगे हुए हैं।

शर्ट पर प्रेस कर रहा है दीवार में बैलून लगे हुए एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

आस-पास दीवालें हैं नीचे एक नली पड़ी हुई है सड़क पे पानी --

आस - पास पंख लगे हुए हैं ऐ.सी लगा हुआ है ऊपर लाइटें लगी हुई है एक कैमरा लगा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा भवन बना हुआ है भवन के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है भवन में बहुत सारी खिड़कियां है।

यहां पे बहुत सारे कारपेट रखे हुए हैं कारपेट के अलग-अलग रंग के है।

यहां पर एक बड़ा सा मंदिर है उसमें माता जी की प्रतिमा है बहुत सारे लाइट लगे हुए लगी हुई है झालरे लगी हुई है।